और बहुत सारा कचरा भी पड़ा है।

रूम के अंदर दोनों तरफ तखत पड़े हुए हैं जो आमने सामने हैं।

एक कूलर भी लगा हुआ है और एक लकड़ी की दो अलमारी भी बनी हुई हैं।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

रूम के अंदर बहोत सारी गर्ल्स बॉयज लेडीज जेंट्स दिख रहे है जो योगा कर रहे है।

इस फोटो में एक बेकरी जैसी दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर डिब्बे दिख रहे हैं।

शॉप के अंदर एक लेडिस और बहोत सारे जेंट्स दिखाई दे रहे हैं।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

और बोहोत तरीके से झूले लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक नदी दिखाई दे रही है।

और दो काले रंग की बतख दिखाई दे रही है।

और कुछ लोग सीट पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

और इसमें लाइटें भी जल रही हैं लोहे की रेलिंग लगी है और एक बोर्ड लगा है।

इस फोटो में एक बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है।

जमीन पर गमले रखे हैं और टाइल्स भी लगी है।

स्टेशन में रेल आने के लिए रेल की पटरी बनी हुई है।

चबूतरा भी बना हुआ है चबूतरे के ऊपर लोग दिख रहे हैं।

और बहोत सारी लाइटे भी लगी हुई है।

एक स्टैचू में फ्रॉक भी दिखाई दे रही है।

शॉप में बहुत सारा सामान भी है जैसे बिस्किट नमकीन जूस वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी हैं।

बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं और एक आदमी दिख रहा है।